साइड में थोड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं फुल कलरफुल है लेकिन बाकि सब ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है।

छवि में आलू का ठेल दिख रहा है आलू नए आलू लग रहे हैं।

मिट्टी धूल दिख रही है किसान बहुत मेहनत से यह उगाते है और हम लोगो का पेट भरते हैं।